यहां जो है मंचूरियन और जो है और भटूरे और सलाडे दही-वयी की प्लेट्स

ऊपर जो है आसमान दिख रहा है और जो है ये वेलकम गेट दिख रहा है। हार्दिक अभिनंदन--

--और रेड कलर रेड बोर्ड पर जो लिखा है एयरटेल वह दिखा रहा है जो नीचे जो है कुछ शॉप्स दिख रहे है।

ऊपर जो है उसके ऊपर कोई बैठा हुआ दिख रहा है साइड में एक पेड़-पौधे दिख रहे है रेड फ्लैग दिख रहा है।